यहां बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है खाकी वर्दी पहनकर।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

यहां में कुर्सी भी दिखाई दे रहा है टेबल भी दिखाई दे है। टेबल के ऊपर में शीशा भी दिखाई दे रहा है।

हमें बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा घास भी दिख रहा है।

ब्लैक वायर भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा पेर भी दिखाई दे रहा है। पत्थर भी दिखाई दे रहा--

यह एक रेलवे स्टेशन है यहां मैं ट्रेन भी दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग का प्लास्टिक भी है।

अलमारी बॉक्स बॉक्स से बना के है उसमें रखा हुआ है वो भी लोहा से।

ऐ_सी भी है सी_सी कैमरा भी है पंखा भी है।

यहां में दो लड़का है एक लड़का पीला रंग का कुर्ता पहना हुआ है सफेद रंग का पैंट काला रंग का जूता पहना हुआ है।

यहां में बहुत सारा लोग है काला रंग का दो कुर्सी दिखाई दे रहा है।

और सफेद रंग का पत्थर भी दिखाई दे रहा है और पंखा भी है।

इसमें जाली लगा के है दरवाजा के लिए और सफेद रंग का बॉक्सेस सब बना के भी है।

परफेक्ट राउंड का टेबल भी बहुत बड़ा वाला है।

किसान का हाथ भी दिखाई दे रहा है कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

अदरक भी है। मिर्ची को डायरेक्ट जमीन पर रखा हुआ है।

यह में सफेद रंग का कुर्सी हे।

और ब्लू कलर का सोफा भी है टेबल है।

इसका ऊपर में बॉटल भी है फ्लावर्स भी है।

नीचे में कारपेट बिछा के है टेबल का ऊपर में टिशू पेपर भी है।